फोटो के अंदर से डी_पी_एस के नाम से कोई फोटो दिखाई दे रही है और इसके अंदर जैसे एक पंखा से पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है।

दोस्तों ये गणपति सदस्य सरस्वती विद्या मंदिर दिखाया गया आपको।

इसके अंदर एक साइड में टपरी सी दिखाई गई है और एक बहुत बड़ा यह विद्या मंदिर दिख रहा है शायद आपको जो की कितना मस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है और इसके अंदर जो गार्डन है--

और यह साइड में घर दिखाई रही है झोपड़ी दिखाई दे रही है और यह खम्बा दिखाई दे रहा है और धूप दिखाई दे रही है।

गार्डन ते क्या यार ये रोड दिखाई दे रहा है लेकिन पता नहीं इसको किसी ब्लर करके क्या किया हुआ है लेकिन अमेजिंग सी ये तस्वीर दिखाई गई है जो की काफी अलग और काफी सुंदर दिखाई--

और ये सारी खेत में काम आने वाली कोई मशीन होगी जो कि काफी बड़ी लग रही है।

इस तस्वीर में एक गाय या फिर बैल अपना चारा खाते हुए नज़- दिख रही हैं।

यहाँ पर दो व्यक्ति लोग खड़े हुए दिख रहे है एक व्यक्ति ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे है और यहाँ पर कुछ खाने की चीज भी रखे हुए है।

इस तस्वीर में एक दो डब्बे रखे हुए दिख रहे हैं| डब्बो के आर-पार नजर आ रही है| डब्बे पे एक लड़की का चित्र बनाया हुआ है पीछे कांच लगी हुई है।